इस चित्र में हमे आपको यह बताना चाहता हूं कि इस चित्र में एक आदमी और एक औरत दोनों एक स्विमिंग पूल में है और यहां पर एक होटल है।

और यहां पर हम एक हरियाली भी देख रहे हैं यहां पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं यहां पर काफी सारे मकान भी बने हुए हैं।

यह पर बहुत अच्छे अच्छे मैकेनिक है यहां पर शादियां हो रही है यहां पर काफी सारे दूल्हा दुल्हन है और उनके साथ में उनके रिश्तेदार भी है।

और यहां पर टेंट लगे हुए है और छाया भी अच्छी की गयी है और मस्त है डेकोरेशन भी बढ़िया है।

और आपसे एक उम्मीद रखना चाहता हूं कि आप भी यहां पर जल्दी से जल्द पहुंचे और इसका आनंद उठाएं क्योंकि यहां पर बहुत सारी हरियाली है।

और यहां एक बैंक का फोटो है यहां पर काफी सारी चेयर रखी हुई हैं।

और यहां पर एक काउंटर भी है जिस पर लैपटॉप रखा हुआ है और यहां पर कांच के दरवाजे भी हैं।

हेलो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इस चित्र के अनुसार यहां पर बहुत सारी हरियाली है और यहां पर काफी हरा हरा मौसम हो रहा है।

और यहां पर बारिश आने की संभावना है और इसमें यह बताना चाहता है कि यहां पर कचरा पात्र भी रखा हुआ है।

यहां पर आपको एक फूल माला दिखाई दे रही होगी यहां पर आपको एक माला की दुकान है और यहां पर कुछ --

हैलो दोस्तों मुझे यहां पर एक होटल दिखाई दे रही है यहां पर काफी सारे बैलून लगे हुए हैं और यहां पर काफी सारी चेयर रखी हुई हैं।

हेलो दोस्तों मुझे यहां पर काफी सारी हरियाली दिखाई दे रही हैं और यहां पर काफी सारा ठंडा मौसम हो रहा है तो आप भी आएं जल्दी विजिट करें।

और यहां पर काफी सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं यहां पर एक टेंपो भी दिखाई दे रहा है यहां पर काफी सारे लोग --

और एक औरत कुछ भाषण दे रही हैं काफी सारे पंखे भी लगे हुए हैं धन्यवाद।

सारे टेंट लगे हुए हैं तो आप भी जल्दी इस लोकेशन पर पहुंचे बीकानेर स्थित हैं यहां पर काफी सारे स्विमिंग पूल हैं तो आप भी विजिट करें धन्यवाद।

काफी सारे पेड पौधे दिखाई दे रहे हैं एक ब्लैक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है यहां पर सड़क बहोत अच्छी बनाई गई हैं।